और नीचे में भी जो खिलौना पड़ा हुआ है ऊपर में भी पड़ा हुआ है कुछ --

और उधर बहुत साडी बसे लगी हुई दिखाई दे रही है व्हाइट व्हाइट कलर इधर साइड में बहुत सारे --

से दिखाई दे रहा है और यहां पे ऊपर में कुछ तार इधर उधर हो रखा --

कुछ यहां पे दिखाई दे रहा है छत्ते जैसे यह कलर कलर में दिखाई दे रहा है यहां पे --

हॉप लिखा है और जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है कुछ स्टार ऊपर में--

रेड और व्हाइट कलर का है और रेड कलर से एयरटेल --

यहां सामने में एक रूम जैसा दिख रहा है इस रूम में एक विंडो सामने में अलमारी है ऐसा दिख रहा --

औ सामने एक रोड दिखाई दे रहा है रोड पे --